चीज भी दिखता दिखाई देता --

इधर में एक पेड़ और पौधा भी लगाया हुआ है और बगल से रोड जा रहा है और रोड के आगे ही रोड के किनारे में है स्कूल ।

गांव में एक बहुत स ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर में एक मैदान है मैदान ग्राउंड के पीछे में एक बहुत बड़ा सा घर है देखने में बहुत सुंदर लगता है।

इधर में छोटा सा दुकान कर रहा है मछली बेच रहा है ।